पीछे दीवाल है जिसका रंग रेड और वाइट है।

यहां पर एक दुकान है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉवर्ड बनाए गए हैं।

ऊपर एक रेलवे स्टेशन दिख रहा है जिसमें बहुत सारे सीढ़ियां लगे हुए हैं।

ऊपर बहुत सारे करकट से छाए गए हैं।

और बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं जो हरे भरे हैं।

नाव से रस्सी को बान्हा गया है।

सूर्यदेव भगवान उग रहे हैं।

उसके अगल बगल बहुत सारे घने बने पेड़ पौधे हैं।

और एक हाथ में कुछ गमछा जैसा है।

यहां पे एक घर दिख रहा है।

के अगल बगल बहुत सारे घर भी हैं।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

एक वजन तोलने वाला भी सामान रखा गया है।

उसके बगल में एक घर है जो उसमें एक लाइट लगा हुआ है जो वाइट कलर का है।

और खेत है जो हरे भरे हैं।

जो व्हाइट कलर का है।

के नीचे एक प्लेट है जो फाइबर का है और वाइट कलर है।

जिसके ऊपर से शीशा का कव्वाड़ी दिया गया है।

यहां पे एक छोटा सा रूम दिख रहा है जिसमें बहुत सारे रेड कलर के कुर्सियां है।

उसके बाहर गुब्बारों से बहुत सारे गेट बनाए गए हैं।

का रंग पीला और पिक और हरा है।